यह एक दुकान की इमेज लग रही है यहाँ अलग-अलग ड्रिंक्स लगा अंदर रखे हुए हैं अलग-अलग पैकेट्स लगा आ रखे हुए है।

वहां दो जार्स है एक ग्लास है ।

यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है जो की ये पेट्रोल पंप है यहाँ सभी गाड़ी में अ पेट्रोल भरने के लिए आए है यहाँ सभी ने अलग-अलग शर्ट पेहेने हुए है रेड कलर के --

उसके बगल में तीन आदमी खड़े है उसके आगे एक बाइक और एक कार लगाए हुए है इस कार के दोनों दरवाजे खुले हुए है।

ये सरकारी अस अस्पताल का दृश्य लग रहा है। यहाँ रोको ना सेवा ऐसे पोस्टर लगाए हुए हैं। सभी ने व्हाइट कलर का शर्ट प --

ये एक होटल का दृश्य लग रहा है जो की यहाँ तीन पर्सन्स और एक वुमन है।

ये कोई डांस क्लास लग रही है जो की बाक़ी बच्चे और महिलायें डांस सीख रही होगी हो लग रही है।

ये एक व्हाइट कलर की बिल्डिंग है और आगे कुछ हरियाली फैली हुई है बिल्डिंग के आगे एक कार लगाई हुई है ।